यह मशीन लकड़ी की नजर आ रही है और बहोत सारे तार नजर आ रहे हैं रस्सी नजर आ रहे हैं।

इसमें बॉक्स है बॉक्स की कलर उजला है बल लगा हुआ है।

बच्चे का कलर का टी शर्ट है ब्लू पैंट है ब्लैक ।

यह एक घर है जो नीचे बहोत सारी दुकान नजर आ रहे हैं और ऊपर बहोत सारे रूम दिख रहे हैं।

पीला कलर के पर्दा लगा हुआ है बहुत सारी कुर्सी दिख रही है।

लाल पट्टी लगा हुआ है।

यहां बहुत सारे लोग दिख रहे हैं जो एक औरत काला कलर के जैकेट पहनी हो और भूरा कलर के पर्स ली है।

दीवारे भी ब्राउन कलर की दिख रही हैं और क्रीम कलर के दिख रहे हैं।